बहोत सारी लेडीजें दिख रही हैं उसमें। महिलायें दिख रही हैं इस झांकी में और लकड़ी के बने हुए क्यारी दिख रही है और रेलिंग दिख रही है। ऊपर छप्पर दिख रहा है।

यहाँ से दिखाई दे रही हैं उसपे भी कुछ लोहे के सामान बने हुए रखे हुए हैं।

एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

और नीचे फ्लोर दिख रहा है जमीन दिख रही है सादा सी जमीन है।

और एक ग्रीन कलर का सेड डला हुआ है।

और एकाद-दो लोग और खड़े हुए हैं गेस्ट ।

एक टीला सा दिखाई दे रहा है उस टीले के ऊपर एक छोटी सी मंदिर सा या कोई बिल्डिंग सी दिख बनी हुई है छोटी सी।

ये किसी पार्क की तस्वीर है जहाँ पे एक गेंडा बना हुआ है और उसकी सूढ़ से आगे मुँह से पानी निकल रहा है।

ये किसी पंजाब नेशनल बैंक का ए.टी.म. दिखाई दे रहा है और ए.टी.म. के बाहर की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं।